उसकी तरफ देखने लग रहा हैं कि उसके हाथ में दो सामान हैं।

एक दो तीन चार पाच--

दो एकम दो दो दूनी चार दो तीये छे दो चौके आठ--

चार एकम चार चार दूनी आठ चार तीय बारह चार चौक सोलह चार पंजे बीस चार छीक चौबीस।

छे एकम छे छे दुनी बारह छे तियां अठारह छे चउ चौबीस छे पंजे तीस छे झांकडा छत्तीस छे साते बयालिश --

एक दो तीन चार पांच--

छे सात आठ नौ--

यह एक ए_सी लगा हुआ है।

जिसके पास एक घर बना हुआ है।

बिस्कुट खाने का सामान और दो आदमी बैठे हुए हैं एक आदमी चाय बनाने लग रहा है।

तक के अंदर है मैने देखा हुआ है इसका पूरा रंग रेड है इसके अंदर खाने पीने का सामान मिलता हैं।

यह एक बड़ा सारा होल है।

जिसके पास एक चप्पल हुई है।